पेड़ दिखाई दे रहे हैं एक लोहे का खम्बा लगा हुआ है ऊपर आसमान का रंग नीला दिखाई दे रहा है।